प्रीस वगैरा की लग रही है।

बनी हुई नज़र आ रही है।

हरे रंग की मशीन दिखाई दे रही है।

इसके टायर्स भी लगे हुएं हैं।

इस दृश्य में हमें एक नीले रंग का सोफा नजर आ रहा है।

साथ में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जैसा भी नजर आ रहा है।

आस पास बहोत ज्यादा हरियाली है हरि भरी वृक्ष लगे हुए हैं।

यह दृश्य हमें किसी हॉस्पिटल का दिखाया जा रहा है।

यह पूरा अलग अलग रंगों के गुब्बारे गुब्बारों से सजा हुआ है।

पीले रंग का पेंट किया हुआ है जिसके ऊपर हमें दी मुराद वाला--

दोल सिंह लिखा हुआ नजर आ--

पीछे हमें एक पोस्टर भी लगा हुआ न दिख रहा है इसके ऊपर स्नैक बार लिखा हुआ है।

हमें इसके सामने दो व्यक्ति भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

उस ग्राउंड पर हमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।